ये आंध्र एटीएम है आंध्र बैंक एटीएम ।

और इसको बेचा जाता है| यहां पर नए-नए साइकिल मिलते हैंऔर यह बहुत ही छोटा है|

शाम के वक्त यहां पर बोहोत भीड़ होती है।

यहां पर कोई भी आना-जाना नहीं करता है।

यहां पर बच्चे आराम से पढ़ सकते है ।

जहाँ हरी और लाल मिर्च दिख रही है।

और यह काफी सन्नाटा हैया बिल्कुल छोटा है।